इसमें लोहे की रेलिंग से कमल फूल बनाया गया है।

एक मूर्ति दिखाई दे रहा है। बहुत सारे रेलिंगस लगाए हुए हैं। पीछे रिवनस लगाए हुए हैं।

सामने एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है।

नीचे रेत और गिट्टी ढेर सारा बिखरा है लेफ्ट में एक ग्रीन कलर का बाल्टी है।

यह एक पहाड़ का तस्वीर है जहां पे झरना बह रहा है।

और कुछ आदमी नीचे बैठे हैं कुछ खड़े हैं बहुत बड़ी जंगल दिखाई दे रहे हैं।

पीछे खिड़की लगी है और दीवाल है खिड़की शीशे का है दीवाल का कलर क्रीम कलर है।

जहां पे बड़े बड़े पत्थरों के बीच मे दो आदमी फंस गए है।

दोनों आदमी ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं हाथ में मौली बंधी हुई है सामने एक जूता दिखाई पड़ रहा है।

यह एक फील्ड का तस्वीर है जहां पे ढेर सारे पेड़ और बांस लगे हुए हैं।

सामने एक बोल लटका हुआ है।

झरना के बगल में एक और छोटी सी झरना बह रही है जो कि बड़े बड़े पत्थरों से निकली हुई है।

यह एक किला का तस्वीर है जोकि टूटा-फूटा है।

पीछे कुछ कपड़े हैं तार पार होइ है और बहुत बड़ा मंदिर है।

मंदिर के पीछे एक तार का पेड़ है उसके बगल में क्रीम कलर का एक घर बना है और एक बड़ा सा पेड़ है।

लेफ्ट में एक पोस्टर लगा हुआ है यहां पे वेलकम लिखा हुआ है।

लेफ्ट साइड में तार रखी हुई हैं बेसिन के ऊपर ट्रोवंत लिखा हुआ है।

मेडिकल के बगल में कुछ लिखा हुआ है सामने बाइकस खड़ी है मेडिकल में काउंटर बनी है जिसका कलर व्हाइट है।

उसके बगल में एक कुर्सी एक सूटकेस एक बैग धारा हुआ है।

नीचे एक टाइल्स लगा हुआ है राईट में एक थैला रखा हुआ है सामने धेर सारी बैलूने लगी हुई हैं।

जिनका कलर गुलाबी काला आसमानी ब्लू काला है बाहर एक पोल जल रहा है।